कुछ पूल तरह के दिखाई दे रहे है। और पूल है। पूल में स्टील बला खंभा लगा हुआ है और बहु बहुत अच्छा लग रहा है देखने में --

यह बहुत बड़ा एक बस है। बस के अंदर बहुत सारे कुर्सियां है। कुर्सी के उप ऊपर बैग रखा रखने वाला है दो तरफ उसके बाद बल्ब भी है। उसके बाद ऊपर छत में कुछ है। और बगल मे भी सिलेंडर रखा हुआ।